तिंरगा दिखाई दे रहा है पास ही में एक लाइट दिखाई दे रही है बड़ा-सा एक पेड़ दिखाई दे रही है।

एक बस दिखाई दे रही है छोटी छोटी घास दिखाई दे रही है बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे है बड़े बड़े घर दिखाई दे रहे है ।

तस्वीर में रास्ता दिखाई दे रहा है एक कार दिखाई दे रही है बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है एक बड़ा-सा घर दिखाई रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में छोटी-छोटी घास दिखाई दे रही है मिट्टी दिखाई दे रही है बड़े से पेड़ दिखाई दे रहे है बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है एक आदमी दिखाई दे रहा है ।

तस्वीर में बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है पिलर दिखाई दे रहे है जो अलग अलग प्रकार दिखाई दे रहे है दो बच्चे दिखाई दे रहे है जो पानी में नहाते हुए दिखाई दे रहे है।

एक गेट दिखाई रहा है जो पूरा गोल दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है इसमें बाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही है।

तस्वीर में एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई दे रही है एक शेर दिखाई दे रहा है त्रिशूल दिखाई दे रहा है एक गाय दिखाई दे एक बड़ा सा टावर दिखाई दे रहा है जाली दिखाई दे रही है ।